कल जैसा लगा हुआ है जोकि अब ऐसा लग रहा है खुला हुआ है। वहाँ पे देखने के लिए एक कांच लगी हुई है। कांच की ग्रिल भी है। ऊपर के तरफ लाइट के कनेक्शन वगैरह लिखे हुए है। यहाँ पे कुछ पोस्टर भी लिखे हुए है। यहाँ पे कुछ लिखावट हुई है। दिवार के हाफ में जो है ग्रिल के जैसा कुछ --

जगह नज़र आ रही है यहाँ पे एक बाल्टी नज़र आ रहा है बाल्टी का कलर वाइट है और इसको नीचे के तरफ रखा --

मछली बनके एक पतीले के ऊपर रखा गया है और यहाँ पे बहोत सारे जो मछली है वो बनी हुई है और ये मछली ऐसा लग रहा है ये देखने में काफी अच्छी लग रही यहाँ पे बड़ी सी एक बाल्टी है जो कि सिल्वर कलर की नज़र आ रही है ।

अ कुछ फूल जैसे बना हुआ है जोकि येलो कलर की नजर आ रही है काफी धूप खिली हुई है और यहाँ पे कोई इंसान नहीं नजर आ रहा है।

ऐसा लग रहा है यह गर्मी का सीजन है और पीछे के तरफ बहुत ज्यादा बाइक वगैरह नजर आ रही है। गेट्स भी आधी खुली हुई है और उसके पीछे एक ग्रिल लगी हुई है ग्रिल जो है ब्लैक कलर की नजर आ रही है।

इस को काफी खूब सूरती से सजाया गया है ऐसा लगता है रोजा रमजान कुछ और बड़े मौके पे सजाया गया है यहाँ लाइटिंग भी जो हुई है वो व्हाइट कलर से हुई है।

पाँच चेयर नजर आ रहा है और चेयर सामने एक टेबल नजर आ रहा है। चेयर का जो कलर वो थोड़ी सी येलो कलर की नजर आ रही है। यहाँ पे एक आदमी बड़ी सी खंभे ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है वो कुछ साफ करने की को --

आदमी नजर आ रहे हैं व्हाइट सफेद टोपी पहन रखी है। उनके सामने बहुत ज्यादा चीज रखी हुई है। ऐसा लग रहा है यह पानी की चीज हैं और भी कुछ लोग आए हुए हैं सामने की तरफ करके कुछ बोलने का प्रयास कर रहे है।